बीच में जो फोटो है वो बुद्ध भगवान की है और इस मंदिर के ऊपर छत है छत के ऊपर कलश रखे हुए है।

यह एक लाइब्रेरी हैं इसमें बच्चों के पढ़ाई लिखाई का काम होता हैं यहाॅं पे साइलेंसी का काम रहता हैं कुछ पड़दे लगे हुए हैं यहाॅं पे खिड़कीयों के आस पास भी कुछ पड़दे हैं ऊपर छत पर पंखे लगे हुए हैं साइड में भी पंखे हैं खिड़कियों के लास्टिंग में लाईटिंग लगी हुई हैं यहाॅं पे काफी अच्छा सा --